रेलिंग बनी हुई है लोहे के पाइप वाली बाजु में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है वहाँ पे बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैऊपर बादल दिखाई दे रहे है--

काफी भीड़ है सामने बिलडिंग बनी हुई है बहोत बड़ी पीछे भी कुछ शटर है बहोत बड़ी बिलडिंग्स है ऊपर से लाइट के तार जा रहे है।

वहाँ पे बहोत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है एक लाइट का खम्बा लगा हुआ है जिसमे लाइट लगी हुई हैं बाजु में टेन्ट जैसा लगा हुआ है--

खिड़किया लगी हुई है और निसेनी टीकी हुई है और बाजु में काफी बड़े बड़े --

बाजु से एक लड़का जा रहा है पीछे एक स्कूटी दिखाई दे रहा है बाजु में पेड़ दिखाई दे रहे--

यहाँ पे सामने एक हॉल की तरह दिखाई दे रहा है जिसमें सामने कुछ वाशिंग मशीन रखी है कुछ छोटी है कुछ --

बस के आगे निसेनी जैसी टिकी हुई है पीछे काफी सारा पानी दिखाई दे रहा है बसों के नीचे वहाँ पे कुछ लोग दिखाई दे रहै हैं।

और ऊपर लाइट भी लगी हुई है और वहाँ पे खिड़कियों के बाजु में कुछ नीले-नीले मेन गेट जैसे बने हुए है और पीछे दिवार में चिपलिया सी चिपकी है।